बीच में कुछ गड्ढे बने हुए हैं थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उनके अंदर पानी भरा है कुछ पथरीले पत्थर भी यहां पर पड़े हुए हैं।

दो-तीन पंखे भी लगे हुए हैं एक व्यक्ति खड़ा है उसने ब्लैक रंग की ड्रेस पहन रखी है।

बोर्ड लगे हुए हैं उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं।

बोर्ड भी लगा हुआ है लोहे का टीन से--

पानी भरा हुआ है पानी में लाइटों की परछाई पड़ रही है सामने की तरफ एक घर बना हुआ है।

नीचे एक ऑरेंज कलर की पट्टी लगी हुई है उस पे कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए वे नीचे की तरफ देख रहे हैं।

नीले और सफेद रंग का एक हवाई जहाज खड़ा है नीचे कुछ व्यक्ति खड़े हैं वे सामान चढ़ा रहे हैं एक महिला खड़ी है ।

एक व्यक्ति ने पैरेट कलर की जैकेट पहनी हुई है।

किसी ने पीले रंग का सूट किसी ने नीले रंग का लाल रंग का सूट पहना हुआ है।

चारों तरफ खाली जगह भी नजर आ रही है।

इसके सबसे ऊपर चोटी पर एक पेड़ नजर आ रहा है।

लोहे का एक पीले रंग का गेट है गेट के पास में ही एक परात रखी हुई है एक सफेद रंग का कट्टा भी रखा हुआ है।

सामने कुछ गमले भी लटके हुए हैं एक कुर्सी भी रखी हुई है सफेद रंग की एक कट्टा भी रखा हुआ है सफेद कलर का--